चेयर्स पड़ी है जो कि खाली है और कोई भी यहां पे खड़ा नहीं है लाइट्स लग रही है।

और एक सोफा भी लगाए बैठने के लिए दुकान में लाइटिंग भी है बहुत अच्छे से डेकोर कर रखा है।

एक बाइक का शोरूम दिख रहा है जिसमें बाइके लगी है।

ये कॉस्मेटिक की शॉप है जिसमें की बहोत सारे बेबीस हैंड वॉश --

जिसमें से एक बच्चा है बाहर एक स्टूल भी लगा हुआ है और बहुत सारे तार दिख रहे हैं बा --

और कुछ सामान कुछ अह साइजस बड़े हैं और कुछ छोटे हैं बहुत सारे सामान इसमें पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

ये भी एक शॉप दिखाई दे रही है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम लग रहे हैं बहुत सारे जिसमें कि पड़े हुए सामान डिब्बों में है और बहुत सारा --

ये फोटो एक जिम का है जिसमें केक मशीन की फोटो दिखाई गई हुई है पीछे भी कुछ मशीने दिखाई दे रही है।

और इसमें से बहुत ही अच्छे से एक आदमी जो कि अह पीछे की साइड से खड़ा है।

और वो झुका हुआ है दूसरा आदमी है जो की चल रहा है दूसरी साइड से देखते हुए जा रहा है।

ये फोटो एक मेडिकल स्टोर की है जिसका नाम राजस्थान मेडिकल स्टोर है मैकिल्स है दवाइयां मिल रही है एक आदमी है।

और यहां सभी तरह की अलमारी अ दवाई मिलती होगी एक कूलर भी पड़ा है साइड में और ये शॉप --

बॉक्सेस में रखे हुए हैं बहुत सारा पाइप भी साइड में खड़े हैं डिब्बों में भी समान है ये सारा ही समान --

और बहोत ही बारीकी से यह किया हुआ है।

यह एक मंदिर की फोटो ली गई है जिसमें गुंबद नजर आ रहा है छत का फोटो है लक्ष्मी नाथ जी टेंपल के पास लग रहा है ये।

बीकानेर का ये लग रहा है पेड़ पौधे भी दिख रहे है इस फोटो के अंदर--

कुछ लोग झुके हुए हैं कुछ लोग नमाज पढ़ रहे है कुछ लोग बैठे है कलर किया हुआ है गेट दिख रहे --